लोहा का है यहाँ पे एक पोस्टर लगा जिसमें बिहार राज्य --

और ऊपर में दीवाल दिखाई दे रहा है वाइट कलर में यहाँ कुछ विंडोज भी दिख रहा है यहाँ --

कत्थी और हल्का पीला कलर में है उधर सामने में घर या --

ऐसा दिख रहा है यहाँ पे।

यहाँ सामने में एक बोर्ड है जिस पे बिहार ग्रामीण बैंक --

और यहाँ पे ब्लू कलर का जो विंडो से पेंट किया हुआ है।

है भी पानी बहुत ज्यादा है यहां पे नाव भी चार-पांच दिखाई दे रही है यहां पे --

शाखा नथनगर लिखा हुआ है यहां पे।

यहाँ सामने में एक थाल रखा हुआ है और थाल में --